क्योंकि हम लोग आसानी से अपने घरो में यूज़ करते हैं और किसी के घर में --

ये एक ए.टी.एम. है जो की स्टेट बैंक ए.टी.एम. है जो कि अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा देने के लिए जाना जाता है यहाँ पे ए.टी.एम. है हम लोग जैसे कार्ड लगाएंगे पैसे निकालेंगे और फिर चले जाएंगे सामने एक ट्रैक्टर भी खड़ा है ।

जो की बैग जिसमें पानी अंदर तक नहीं जायेगा में अब --